ये एक बुक सेंटर की फोटो है आरती बुक सेंटर यहां पे बहुत सारे लोग खड़े हुए और सामने बहुत सारी बुक्स है।

ये साधु लोगो का बिल्डिंग है और बाहर गार्डन हैं बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ भी है और एक --

साइड में मीटर है बहुत सारे गमले भी हैं यहां और सामने गेट है और साथ में सेक्टर वाले वो भी लगे हुए हैं ऊपर --

एक गाड़ी की दुकान है जहां पे सामने दो तीन सीट्स रखे हुए हैं गाड़ी के और टायर्स के ओ टायर्स के पार्ट्स भी रखे हुए है।

ये एक मेडिकल स्टोर है जहां पे बाहर एक आदमी पानी पी रहा और एक आदमी कैश काउंटर पे है।

जहां पर है ना ऊपर छत में बहोत सारे टंकी है ब्लैक कलर के और नीचे टंकिया है।

ये किसी के घर के बाहर की फोटो है यहां पे तीन गाड़ियां खड़ी है और एक गाड़ी का गेट खुला हुआ है।

फोन देख रहे हैं और पीछे मिरर लगा हुआ है।

साइड में एक फोटो है जिसके अंदर बहोत सारे फोटोज रखे हुए हैं।

और नीचे अलग अलग डिजाइन की घड़ियां है और यहां पर लकड़ी के पीछे पे अलग अलग डिजाइन --

सुजुकी की और साइड में एक अंकल जा रहे हैं और यहां पे एक पेड़ भी है बड़ा सारा और पीछे बहोत सारे पेड़ हैं।